हरे कलर के पौधे नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे पैसे भी दिखाई दे रही है और एक पास से एक आदमी भी बैठा नजर आ रहा है।

बहोत सारे मोबाइल भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर हमें प अह एक सड़क दिखाई दे रही है जिसके अह सड़क के पीछे बहुत सुंदर घर भी दो दिखाई दे--

वहां पर हमें एक क्वालिटी की बुक सेंटर --

और ऊपर से छत डाला हुआ है। पीछे बहोत हरे कलर के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहोत बड़ी ये पारक दिखाई दे रही है।

अ पौधे दिखाई दे रहे हैं पेड़

अ घरको के बीच में ही एक--

और एक आदमी खड़ा भी दिखाई दे रहा है पास में--